और पीछे ये एक सोफा भी दिखा रखा है।

जो कि सामान वगैरह खरीद रहे हैं और ये फ्रूट्स और सब्जियों की दुकानें हैं वो दिख रही हैं।